यहां काफी उजाला भी है।

यहां बिजली की तारे दिखाई दे रही है।

यहां हरे रंग का घास बिछा हुआ है।

यहाँ काफी उजाला है यहां सफेद पर्दे से कुर्सियां ढकी हुई भी है।

यहां कई सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है।

कई सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है।

यहां महिलाएं हाथ जोड़े खड़ी हुई है।

यहां दीवारों पर भिन्न भिन्न प्रकार की तस्वीरें लगाई गई है।

यहां एक नाव दिखाई दे रहा है।

यहाँ कई सारी वस्तुएं रखी हुई है।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

यहाँ एक छोटा सा अलमीरा भी है एक दरवाजा भी लगा हुआ है।

यहां कई सारे दो पहिए बाहर में खड़े हैं।